इसमें बहुत सारा पानी है इसमें नाव चल रही है जो हाथ से चला रहे है दो आदमी है जो इसे चला रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।

वो नीचे कुछ लोग खड़े हैं चार पांच लोग खड़े हैं आपस में डिस्कस बाते कर रहे हैं और गमले रखे हुए है पेड़-पौधे लग रहे कार खड़ी है।

इसमे टाइल्स लगी हुई है व्हाइट ये खिड़कियां है नीचे भी टाइल्स लगी हुई है तीन लोग है एक ऊपर --

ये एक होटल है जिसमें इसका गे ये होटल का गेट है यहाँ पे लि बोर्ड लगा है जिसका नाम लिखा है होटल युवराज डे डे।

लेडीजे भी है गर्ल्स भी हैं बॉयज भी है जेंट्स भी है सभी है जो इकठे खड़े हुए है एक स्कूटी खड़ी है साइड में ब्लैक कलर क स्कूटी है।

ये जाली लगी हुई है तारों की जाली है ।

इसमें मछलियां की दुकान है ही यहाँ बोहत सारी मछलियां रखी हैं फर्श पर